और अलमारी में सेल्फ बनी हुई है।

बीच में उनके एक लड़का खड़ा है।

ये एक सामने बिल्डिंग दिख रही है।

ये एक सामने मिठाई की दुकान दिख रही है।

जो की आगे से खोली हुई है।

फुल लगाएं हुए हैं और साइडों में एक--

शीशे के दरवाजे दिख रहे हैं।

ओ एक हरे रंग की शेड भी लगी हुई है।

और शेल्फ में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

दिख रही है जिसमें एक सामने आदमी भी खड़ा है।

जिसके ऊपर मुफ्ती पत्री लिखा हुआ है।

और पीछे कुछ लाल रंग की टोकरी जैसी डब्बे जैसे पड़े हैं।

एक टेबल हैं जिसका बेस ट्रांसपेरेंट है।

पीछे कुछ डब्बे रखे हुए हैं प्लास्टिक --

जैसे की सेल जैसे टंगे हैं।